कुर्ता पहने हुए है और गले में येल्लो दुपट्टा दाल रहा है और बहुत से बिल्डिंग पर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए है जो अलग-अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान काला दिखाई दे रहा है और तालाब के किनारे बहुत सारे लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

और बहुत सरे हरे-हरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है दो मकान भी दिखाई दे रहे है मकान सफ़ेद कलर के दिखाई दे रहे है और नीचे बहुत सारा घास भी उगा दिखाई दे रहा है।

और नदी का पानी काला दिखाई दे रहा है बहुत सारे काले पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है नदी के किनारे बहुत सारे देवनो से सजावट हुई दिखाई दे रही --

छत दलते हुए दिखाई दे रहा है जिसके पिलर खड़े हुए दिखाई दे रहै है और सीमेंट

कुछ भू हरे भरे पेड़ पौंधे दिखाई भी दे रहे है और एक खंबा दिखाई दे रहा है जिस पर एक लाइट लगी दिखाई दे रही है एक लड़का सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है।

मेला लगा दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे हुए दिखाई दे रहे है नीचे बहुत बड़ा फर्श बिछा हुआ है जो हरे कलर का है और एक बहुत बड़ा मकान दिखाई दे रहा हैजैसे --